जो कि अलग-अलग कलर की हैं।

और जहां पर इ रिक्शा खड़ी है। वहां रेत है।

फोर्थ है और कुछ हाफ लोअर भी हैं।

की इन कीड़ो को पकड़ कर रखा गया है।

कुछ पन्नी में दब कर बेहोस जैसे हो गए हैं।

जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है।

इस इमेज में एक ए टी एम मशीन दिख रही है।

कपड़े पहनी है और एक लड़के ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है। एक ने ब्लू कलर की --

एक महिला ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और एक ने ग्रीन कलर --

और बॉउंड्री एक ऑरेंज कलर की दीवार है।

सजावट की गयी है और बहोत सारे लोग खड़े हैं। कुछ महिलायें कुछ पुरुष भी हैं।

जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। ऊपर नीला आकाश दिख रहा है और बिजली की तारें भी दिख रही हैं।

जिस पर बहोत अलग-अलग टेबल रखे हुए हैं और कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं।

पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हैं जो ग्रीन हैं।

और पीछे एक टावर दिख रहा है और आकाश भी दिख रहा है और बड़े बड़े ग्रीन पेड़ --

यहाँ पर एक लड़का दिख रहा है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है।

एक लोहे की सीढ़ी भी रखी है।

जिसमल बहोत सारे सुन्दर-सुन्दर लकड़ी के समान बिक रहे हैं।